ये बहुत से लोग है ग्राउंड में बैठे हुए है और एक सज्जन गाँव में बैठे हुए है नजर--

एक दुकान दिख रही हैं जिसमे डिफरेंट डिफरेंट कलर के परदे टंगे है एक लाल कलर का फूलदार पर्दा है फिर भूरे कलर के परदे रखे है काले कलर के परदे --

पुलियाँ टाइप एक टीला बना हुआ है टीले के ऊपर की तरफ एक मगरमच्छ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है फत्तर के टुकड़े पड़े हुए है छोटी छोटी घास उग रही है।

एक कमरा दिखाई दे रहा है इसमें बेड दिखाई दे रहा है बेड पे बेडशीट बिछी हुई है चादर बिछी हुई है।

और साइड मे दो उम् लकड़ी की कुर्सियां बनी रखी हैं एक टावर दिखाई दे रहा है छोटे छोटे कांच दिखाई दे रही है मिट्टी दिखाई दे रही है।

रोड दिखाई दे रहा है रोड से एक बहुत बड़ी कपड़ों की बिल्डिंग में एक बिल्डिंग है इसमें कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान है जिसमें लड़कियों और औरतों के कपड़े है।

यहां रोड पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं स्कूटी से रोड पर चल रहे हैं दो सजन खड़े हैं एक पुलिस वाले अंकल हैं खड़े हुए हैं बिजली का--

दिखाई दे रहा ग्राउंड में एक बड़ो बहुत बड़ो वृक्ष दिखाई दे रहा है वृक्ष के साइड में तिरंगा नज़र आ रहा है बहुत विशालकाय --

एक कार दिखाई दे रही हैकार के साइड में रेलिंग लगी हुई है रेलिंग के साइड में एक कार रखी हुई हैऔर कुछ दुकाने दिखाई दे रही है रोड दिखाई दे रहा है।

जैकेट पहनी हुई है बैग टाँगे हुए है पैर में चप्पल पहने हुए हैं घर के ऊपर दो पानी की टंकी रखी है बिजली ट्रांसफॉर्म दिख रहे हैं पेड़ दिख रहे हैं।

डांस हॉल दिखाई दे रहा है जिसमे एक सजन खड़े होकर वीडियो बना रहे है कांच का केबिन दिखाई दे रहा है छोटे-छोटे लड़के लड़किया डांस करते हुए नजर आ रहे है।

एक बुक स्टैशनेरी दिखाई दे रहे है जिसमे बहुत हीरो की स्टिकर लगे हुए दिखाई दे रहे है और कांच का कैबिन है।

दुकान के अंदर एक लैडी शॉपकीपर है और एक सज्जन खड़े होकर दुकान से कुछ खरीद रहे है साम-बाहर डस्ट्बिन दिखाई दे रहा है।